जैसा कि एक इमेज में दिखाई दे रहा है। यहाँ एक क्लास रूम की इमेज है। जिसमें ऐसी

पूरे शहर का व्यू है जो इस इमेज मे दिखाई दे रहा है| और बहुत कलरफूल शहर का ये व्यू है।

इसमें मैगी रखी है ओट्स रखा है और में--

जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है यहां एक शॉप है जिसमें बहुत सारे समान रखा हुआ है| कॉर्नफ्लेक्स रखा है।